stereoisomerism पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: उदाहरणों के साथ conformational isomerism geometrical isomerism और rs configurations
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ:
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको avogadro interface से परिचित होना चाहिए
इस tutorial में उपयोग हुई उदाहरण files code files में दी गयी हैं
इस tutorial में हम avogadro उपयोग करके stereoisomers बनाना सीखेंगे
मैं stereoiosmersism के बारे में संक्षिप्त परिचय दूँगी
stereoisomersism परमाणुओं की त्रिआयामी व्यवस्था spatial arrangement में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है
isomers समान संरचना रखते हैं और गुणों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है
यहाँ एक slide है जो isomers का वर्गीकरण दिखाती है
मैं conformational isomerism के साथ शुरू करती हूँ
यह स्टीरियोआइसोमेरिस्म का एक प्रकार है
इसमें isomers को single bonds के चारों ओर rotation करके अन्तःपरिवर्तित किया जा सकता है
single bond के चारों ओर rotation rotational energy barrier से प्रतिबंधित किया जाता है
अब 12dichloroethane के कन्फॉर्मर्स conformers के साथ शुरू करते हैं
12dichloroethane तीन कन्फॉर्मर्स में होता है जैसे कि:
मैंने avogadro window खोल ली है
draw tool पर click करें
adjust hydrogens check box को अनचेक करें
panel पर click करें और दो परमाणु बनाने के लिए drag करें
element drop down से chlorine चुनें
प्रत्येक carbon पर एक bond बनाएं
build menu पर जाएँ और add hydrogens पर click करें
12dichloroethane panel पर बनता है
अब संरचना को optimize करते हैं
auto optimization tool पर click करें
force field में mmff94 चुनें और start button पर click करें
ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया रोकने के लिए stop पर click करें
उचित orientation हेतु संरचना को rotate करने के लिए navigation tool पर क्लिक करें
हमारे पास panel पर gauche conformer है
12dichloroethane के conformers दिखाने के लिए मैं rotation के plane को स्थिर करुँगी
bond centric manipulation tool पर click करें
दो carbon परमाणुओं के बीच के bond पर click करें
परमाणुओं के बीच का plane नीले या पीले रंग में दिखता है
chlorine परमाणु पर cursor रखें
bond को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं
navigation tool पर click करें और संरचना को rotate करें
हमारे पास panel पर anti conformer है
cc bond को rotate करने के लिए दोबारा bondcentric manipulation tool उपयोग करें
हमारे पास panel पर eclipsed conformer है
अब मैं cyclohexane के अनेक conformers दिखाऊँगी
एक नयी window खोलें
draw settings menu में carbon default element की तरह चयनित है
adjust hydrogens check box को अनचेक करें
अब cyclohexane संरचना को boat form में बनाते हैं
panel पर cyclohexane का boat conformer बनाने के लिए click और drag करते हैं
परमाणुओं को label करने के लिए display types menu में label check box पर click करें
ध्यान दें labeling हर समय एक सी नहीं भी हो सकती है
अपनी आवश्यकता के अनुसार conformers को label करते हैं
selection tool पर click करें फिर पहले carbon परमाणु पर right click करें
एक menu खुलता है change label चुनें
change label of the atom text box खुलता है
new label field में 1 type करें और ok पर click करें
आगे दूसरे परमाणु पर right click करें और label को 2 करें
उसी प्रकार मैं परमाणुओं के labels को 345 और 6 करुँगी
हम boat को twist boat conformer में बदलेंगे
manipulation tool पर click करें 2 पर click करें और इसे ऊपर drag करें
5 पर click करके इसे ऊपर drag करें 3 पर click करके इसे ऊपर drag करें
हमारे पर panel पर twist boat है
अब हम twist boat को half chair conformer में बदलेंगे
2 पर click करके इसे नीचे drag करें
5 पर click करके इसे नीचे drag करें
4 पर click करें और इसे क्षैतिज स्थान पर drag करें
सही संरचना के लिए अगर अवश्यक हो तो सारे carbon परमाणुओं के स्थानों को समायोजित करें
हमारे पास panel पर half chair है
अब हम half chair को chair conformer में बदलेंगे
4 पर click करें और इसे नीचे drag करें
1 पर click करें और इसे नीचे drag करें
सही संरचना के लिए अगर अवश्यक हो तो सारे carbon परमाणुओं के स्थानों को समायोजित करें
हमारे पास panel पर chair conformer है
assignment में butane और cyclopentane के अनेक कन्फॉरमर्स बनाएं
अब मैं geometrical isomerism दिखाने के लिए संरचनाएं बनाऊँगी
geometrical isomerism बनता है: doublebond के चारों तरफ परमाणुओं की भिन्नभिन्न त्रिआयामी व्यवस्था spatial arrangement के कारण
यहाँ doublebonded carbon के चारों तरफ परमाणुओं या ग्रुप्स का rotation प्रतिबंधित है
प्रदर्शन के लिए मैं diamminedichloroplatinum ii संरचना बनाऊँगी जिसे cisplatin भी कहते हैं
एक नयी window खोलें
draw settings menu में element drop down पर click करें और other चुनें
table से platinum pt चुनें periodic table window बंद करें
panel पर click करें
element drop down से chlorine चुनें
platinum परमाणु पर एक ही तरफ दो chlorine bonds बनाएं
element drop down से nitrogen चुनें पहले की तरह दो nitrogen bonds बनाएं
संरचना पूरी करने के लिए हमें nitrogen परमाणुओं पर तीन जुड़े हुए hydrogens की ज़रुरत है
element drop down से hydrogen चुनें
तीसरा bond बनाने के लिए प्रत्येक nitrogen परमाणु पर click करें
संरचना को optimize करें
auto optimization tool पर click करें
force field में uff चुनें और start button पर click करें
ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया को रोकने के लिए stop पर click करें
प्रदर्शन के लिए मुझे दो संरचनाओं की ज़रुरत होगी
मैं संरचनाओं को copy और paste करुँगी
संरचना को चुनने के लिए selection tool पर click करें
copy के लिए ctrl + c और paste के लिए ctrl + v दबाएं paste की हुई संरचना को दायीं तरफ drag करें
सुविधा के लिए मैं परमाणुओं को label करुँगी
display types menu में label check box पर click करें
hydrogens हटाने के लिए build menu पर जाकर remove hydrogens चुनें
हमारे पास panel पर cisplatin के दो isomers isomers हैं
मैं दूसरे cis isomer को trans isomer में बदलूँगी
manipulation tool पर click करें
cl4 पर click करके बायीं तरफ लाएं n4 पर click करके दायीं तरफ लाएं
फिर उचित orientation अभिविन्यास दिखाने के लिए सारे bonds के स्थानों को समायोजित करें
build menu पर जाएँ और add hydrogens चुनें
पहले की तरह प्रत्येक nitrogen दो जुड़े हुए परमाणु रखता है
draw tool से hydrogen उपयोग करके तीसरा hydrogen जोड़ें
अब संरचनाओं को optimize करते हैं
auto optimization tool पर click करें
force field में uff चुनें और start button पर click करें
ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया को रोकने के लिए stop पर click करें
अब हमारे पास panel पर diamminedichloroplatinum ii के दो geometrical isomers हैं
उसीप्रकार हमारे पास diamminetetracyanoferrate iii ion के geometrical isomers हैं
आगे हम rs configuration के बारे में चर्चा करेंगे
rs configurations chiral centre की उपस्थिति के कारण होता है
chiral centre चार भिन्नभिन्न प्रतिस्थापियों से जुड़ा हुआ परमाणु होता है
configurations एक दूसरे की nonsuperimposable mirror images होती हैं
rs configurations के प्रदर्शन के लिए मैं amino acidalanine उपयोग करुँगी
एक नयी window खोलें
मैं fragment library से alanine संरचना load करुँगी
fragment library में उपलब्ध सारे amino acids दृष्टिगत रूप से सक्रीय हैं
आप अपने आप load और अन्वेषण कर सकते हैं
संरचना को अचयनित करने के लिए ctrl + shift और a कीज़ दबाएं
उचित orientation हेतु संरचना को rotate करने के लिए navigation tool उपयोग करें
केंद्रीय carbon परमाणु chiral है जो 4 भिन्नभिन्न ग्रुप्स से जुड़ा हुआ है
r s configuration दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशाओं में प्रतिस्थापी को दी गयी वरीयता पर आधारित है
वरीयता प्रतिस्थापी के atomic number पर आधारित है
उच्च atomic number वाले प्रतिस्थापी को पहली वरीयता मिलती है
अब हम दक्षिणावर्त दिशा में वरीयता देखते हैं
इस संरचना में nitrogen को पहली वरीयता दी गयी है
oxygens से जुड़े हुए carbon को दूसरी और methyl को तीसरी वरीयता दी गयी है
संरचना r configuration रखती है
मैं जुड़े हुए ग्रुप्स के स्थानों को chiral carbon से बदलूँगी
build menu पर जाएँ और remove hydrogens चुनें
manipulation tool पर click करें
carbon को दायीं तरफ लाएं
oxygens से जुड़े हुए carbon को बायीं तरफ लाएं
build menu पर जाकर add hydrogens चुनें
अब वामावर्त दिशा में वरीयता देखेंगे
nitrogen की पहली वरीयता है oxygen से जुड़े हुए carbon की दूसरी वरीयता है
संरचना s configuration रखती है
उसी प्रकार हमारे पास पैनलglyceraldehyde के r और s configurations हैं
सारांश में
इस tutorial में हमने निम्न बनाना सीखा:
assignment में 2butene और 12dichloroethene के geometrical isomers bromochloroiodomethane के rs configurations बनाएं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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट जया द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद